यह एक प्राथमिक विद्यालय है। इस प्राथमिक विद्यालय को पूरी तरह से छोटी सी विज्ञालय विद्यालय को पूरी तरह से सफेद रंगों से पेंट किया गया है और यह विद्यालय अभी बंद है और इसके सामने --

यह एक जगल है और जगल के बीचों-बीच में ये झरना का पानी गई हुई है और इस झरने की पानी के तीन चार विद्यार्थी दिखाई पड़ रहे और यह एक गुरुकुल संस्थान है और इस जगह से एक बड़े-बड़े पेड़ पौधे ही दिखाई पड़ रहे हैं।

कुछ छोटे-छोटे बोर्ड भी लगे हैं। लगता है देखने से कोई सरकारी दफ्तर है और उस ऑफिस के --

तीन चार कोम्ब्यूटर हैं जो सभी कोम्पीटर ऑन की स्थिति में हैं।

डाक्टर महान महावीर चिकित्स राये चिकित्सालय उसके नीचे भी लिखा हुआ है डाक्टर एम के --

लाल पोस्टर में लिखा हुआ है बहु मंगल परवेश और ये कोई बौद्ध धर्म के --